वहाँ पर कुछ आदमी खड़ी हुई हैं कुछ जा रहे हैं कुछ कार की मतलब कार भी जा रही हैं टैक्सी भी जा रही हैं कुछ पेड़े भी दिख रहे हैं रोड पर मुझे काला-काला सा साफ-साफ नज़र आ रहा हैं बहोत सारी मालाएं रंग-बिरंगी वहाँ पर टंगी हुई हैं।

मून बेरी लिखा है लाल कलर में वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे सीधा म रोड -रोड निकला हो वहाँ पर बहुत सारी कारें रखी है टैक्सी रखी हुई है वहाँ पर कुछ मेल भी खड़े हुए है फीमैल भी --

ऐसा लग रहा है मतलब- मतलब किसी की फोटो दिखाई दे रही है वहाँ पर रखने के लिए बहुत बुके भी रखी हुई है हर --

चेयर लगने मे या कभी किसी ऐसी चेयर पर बैठी बैठे ही नहीं बोत अच्छी चेयर लगी है आपको दिखा रहे है तो वहाँ जाना है।